कान दुकानों का और इधर कुछ लोग खड़े हुए है।

और इनका ओनर का नंबर दिया हुआ है ऐट ज़ीरो ऐट ज़ीरो ऐट ज़ीरो नाइन थ्री थ्री फोर और ये जो कैम्प बनाया गया है फर्निचर ब्लैक कलर मे फर्निचर है इसका।